यहाँ कोई स्टेज है जिसपे कोई बैठा हुआ है और वहा कॅमेरेवाले भी है और उसके सामने बहुत सारी चेअर --

कि उनका बोर्ड लगा हुआ है तो वो तो खडे हुए है एक भाई मास्क लगा रहा है और अंकल जी सायकल पे जा रहे है वही अब काला रोड भी है वहा --

यहाँ बहुत सारे बच्चे खडे हुए है लायन लगा कर और यहा बहुत सारे बच्चो को देख भी रहे है।

यहाँ स्टेट बँक ऑफ इंडिया का फोटो है और यहाँ ए_सी भी लगी हुई है।

यहाँ किसी ग्राउंड का फोटो है यहाँ पे बहुत सारी और उपर से दो भाई नीचे देख रहे है ये ओ एक भाई फोटो भी खिंच रहा है दो भाइयों का --

कंस्ट्रकशन का काम चल रहा है यहाँ पे छत डल रहा है यहाँ पे तार है नीचे से मशीन आ रही है और यहाँ पे बहूत सारे लोग खडे हुए है पीछे हरयाली --